जहां पर सामने लड़का कसरत कर रहा है और यहां पर लाइट्स भी जलती नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है यहां पर एक बोर्ड भी लगा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ औरतें पानी में पूजा कर रही हैं यहां पर केले के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने एक जेंट्स सैलून दिखाई दे रहा है यहां पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक खेत दिखाई दे रहा हैं यहां पर पानी का फाउंटेन चल रहा हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है यहां पर एक ट्रेन भी नजर आ रही है।

जिसमें दाल चावल सब्जी और सैलेड भी रखा नजर आ रहा है यहां पर दो चम्मच भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है यहां पर गेट भी नजर आ रहे हैं और यहां पर सामने--